जिनमे से दो व्यक्तियों ने गमछा पहना हुआ है।

यह दोनों हाथों में शुज पहना हुआ है इसमें कैप लगा रखी है जिसपर लिखा है बॉय ।

यह साईं बाबा माता रानी की प्रतिमा है जहाँ पर पुजारी माता रानी के सामने धोते हुए नजर आ रहें --

ठीक पीछे एक एस.बी.आई का बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड के नीचे बहोत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं।